इनमें से ज्यादातर बैट पान कंपनी की हैं एक बैट एडिडास का है और दो बैट एस_एस कंपनी के हैं।